घर के सामने एक पोल लगा हुआ है जिसमे कुछ पोस्टर में लिखा हुआ है।

एक बड़ा सा चर्च है।

बहुत से व्यक्ति चलते चलते जा रहे हैं।

यह एक होटल है जो लकड़ी से बना हुआ है जिसका टेबुल भी लकड़ी और कुर्सी भी लकड़ी का है।

दुकानदार भी यही खड़ा हुआ है।

इसके चारों तरफ पे पौधे--

जो खुलने खुलने खुला जा सकता है।

ये बड़ा सा रोड है जिसके आस पास टोटो लगा हुआ है।

शटर का कलर नीला है इसके सामने बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी जा रहा है।

वो किला में जा रहा है।

एक चेयर है बैठने के लिए।

फूल से दुकान सजा हुआ है।

बहुत सारे किताब रैक के अंदर रखा हुआ है।

इसके सामने बहुत सारे मशीन रखा हुआ है।

दुकान सेल्स और सर्विस दोनों ही करते हैं।

बहुत सारे कैमरा रखा हुआ है।

यहां पर गाय का बच्चा भी--

जिसमें मालिक बैठा हुआ है यहां पर कार्टून रखा हुआ है।

पेड़ोस के साइड में बंसा हुआ है।

यहां पे बिस्कुट भी मिलता है।